है यह पार्क छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है यह पार्क हमारे यहाँ का सबसे अच्छे पार्को में से एक -

सा डी_जे बहुत अच्छे बजने में भी है यह एक मैदान के बीच में खड़ा किया गया है तथा इस मैदान में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।